उनके उपर बहुत सारे लोग बेठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे गे गेट लगे हुए हैं उस वो ब्लू कलर के हैं।

यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है टेबल है। उसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई है।